बगल में एक दीवार है जिसके ऊपर टी होप लिखा हुआ है।

इसके ऊपर एनी टाइम फिटनेस लिखा हुआ है।

इसके बगल मेें एक बड़ा सा शेड बना हुआ है।

लोहे के फ्रेम लगाए गए हैं एवं इन पर वेल्डिंग किया जा रहा है।

इसके अंदर बहोत सारे डेक्स बनाए गए हैं बैठ पढ़ने के लिए।

इसके ऊपर द सिटी ऑफ कैफे योर ग्रेब हब लिखा हुआ है।

यहां बहोत सारे रैक है इन पर किताबों एवं कॉपियों को सजा कर रखा गया--

सामने की ओर बड़े बड़े अक्षरों में बरिस्ता लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है।

एक स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा प्रकाश दे रहा है।

इसकी दीवारें सफेद रंग की है।

तस्वीर में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे छोटे छोटे घास उग आए हैं।

इसकी सजावट अरेंज रंग के गेंदे के फूल से की गई है।

ऊपर में एंटिना लगा है अंदर की ओर दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी दुकान की है।

यहां बहोत सारे चिप्स कुरकुरे एवं न्यूटेला को टांगा गया है।

दुकान में बहोत ज्यादा भीड़ लगी है।

एक बच्चा पैकेट में हाथ डाल के खड़ा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

इसमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ पानी है।

यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है।

तथा दो लोगों ने सफेद रंग की टी शर्ट --

एवं सभी ने अपने सर पर घूंघट कर रखा है।

भारत अहूजा एडवोकेट का ऐड भी किया गया है।

बगल में एक ट्रेन खड़ी है जिसके ऊपर लाल रंग की पट्टी है एवं नीचे की ओर पीले रंग की पट्टी है।

बगल में सफेद रंग का बेड दिखाई दे रहा है।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

एवं उनके इर्द गिर्द बहोत सारे छोटे छोटे बल्ब भी लगाए गए हैं।

बगल में सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।